मछलिया दिख रही है और कॅरेट दिख रहा है। टेन्ट दिख रहे है बहुत साडी लेडीज दिख र--

इस तस्वीर मे मुझे चैर दिख रहे है तस्वीर मे मुझे लाइट दिख रही है इस तस्वीर मे मुझे एक बोर्ड दिख रहा है।

ए.सी दिख रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एलेक्ट्रिसीटी खंबा दिख रहा है इस तस्वीर मे मुझे आसमान दिख रहा है।

तस्वीर मे मुझे पेट्रोल टंकी दिख रहा है इस तस्वीर मे मुझे खंबा दिख रहे है इस तस्वीर मे मुझे पेड़ दिख रहा है।